यहां पर बहोत सारे कांच के शीशे लगे हुए हैं और स्टील की ग्रिल भी लगी हुई है--

यहां पर बहुत सारी कार रिपेयर हो रही हैं।

यहां पर एक स्टील की ग्रिल लगी हुई है।

यहां पर बहुत सारी मिट्टी भी है।

ये एक हॉस्पिटल है और यहां पर बोहोत सारे रूम बने हुए हैं।